कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं धावा वाली दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा--

दुकान दिखाई दे रही है आदमी दिखाई दे रहा है किताबे दिखाई दे रहीं हैं की शर्ट दिखाई दे रही है।

कुछ उजेला सा दिखाई दे रहा है और घने जंगल दिखाई दे रहे हैं।

औ दिखाई दे रहे है| एक मकान सा दिखायी दे रहा है |पीले कलर का दिखाई दे रहा है | यह रिवर दिखाई दे रही है और लम्बे वाले पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

गिट्टी दिखाई दे रहा है झूला दिखाई दे रहा है।